और गोले गोले हाता भी मरा हुआ है और यहां पे बहुत सारी लाइट भी जल रही है।

यहां पर बहोत सारी सजावट हुई है और यहां पे बहोत टेबल भी लगाई गई--

और इसमें तार भी मारा हुआ है और इसमें दो खिड़की भी दिख रहे हैं।

और एक चेयर भी है और एक यहां पर सीढ़ी भी है जो लोहा का बना हुआ है और इधर में छोरी भी बहुत सारे हैं घर में भी केला का पत्ता गड़ा गया है और इधर।

इधर भी एक नीचे मे तार है और नीचे में टाइल्स लगी हुई है और इधर में घास भी है और ऊपर में बाद--

लोहा का पाया भी है मतलब पाइप भी है और यहां पर एक आदमी भी है जो है।

यहां पे कोई मूर्ति का पंडाल है और यहां पे बहोत सारे आदमीन भी हैं और यहां पे बहोत सजावट हुई है और ऊपर में भी दो तीन चार ता।

और यहां पे एक आई_डी कार्ड भी है और यहां पे एक मूर्ति की तरह है और और यहां पर व्हाइट कलर का पेंट भी किया गया--

यहां पे एक तर्जोई भी रखी हुई हैं यहां पे एक प्लास्टिक भी बिछाई गई है।

यहां पर एक गाड़ी लगी हुई है दो तीन गाड़ी भी लगी हुएं हैं और वहां पे एक बहुत बड़ा ग्राउंड भी दिख रहा है।

इधर जो है रेलिंग मारा हुआ है और करकट के घर का घर है करकट का है।

यहां पर कोई दवाई मेडिकल है और यहां पे दवाई बहोत सारी रखी हुई है और गोले गोले हाथा मारा गया है और शिशा भी लगी हुई है।

और यहां पे बहुत मतलब ड्राइंग किया गया है और--

यहां पे एक लाइट भी रखी हुई है और बहुत सारे अह बहुत सारे अलमा अलमीरा बनाई हुई है।

लाइट भी जल रही है बहोत सारा और वहां पे अलमारी भी बना हुआ है जो है गोल डिजाइन में है और उधर में भी--

रंगी बिरंगी यहां पे बहुत मछली भी हैं और यहां पे कुर्सी भी रखी हुई है।

यहां पर बहुत सारी फोटो भी लगी हुई है और यहां पर एक चेयर भी है और यहां पर एक टेबल भी है।

यहां पे कोई झंडा फहरा रहे हैं और यहां पे बहुत बड़ा बिल्डिंग है और--

और ऊपर में बोल भी बहुत सारे जल रहे हैं और यहां पे पाइप भी बहुत सारे ऊपर में है करकट के पास।